यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत से लोग इस काम मे लगे हुए हैं ।

तो दूसरी ओर छोटी-छोटी दुकानें लगी हुई है और एक ऑटो भी खड़ा हुआ है।

यह बुलेट रॉयल एनफील्ड है | यह दुकान बुलेट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है।

यहां पर यह गैलरी बनी हुई है जिसके एक ओर बहुत से हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

बच्चे बूढे महिला व पुरुष सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं।

और मस्ज़िद के ऊपर एक झंडा भी लगाया गया है।

यहां पर एक घर बन रहा है जिसके लिए बहुत सी ईटे जमीन पर रखी हुई हैं।

नीचे के ओर बहोत से पत्थर डले हुए हैं।

यह बाजार है बाजार में बहुत सी भीड़ हो रखी है।

शिक्षा शास्त्र विभाग लिखा हुआ है इस बिल्डिंग के बाहर ही और बहुत बड़ा खाली मैदान डला हुआ है।

यह एक माला की दुकान है जहाँ पे रंग बिरंगे फूलो से माला बनाई जाती है।

और यहाँ पर एक माला टंगी हुई है जो की --

यहां पे बहुत से लोग बोट राइडिंग के लिए भी आते है और दूसरी ओर एक शहर बसा हुआ हैं।

यह एक सनसेट पॉइंट है जहाँ पे शाम के समय यह दृश्य बहुत ही सुन्दर दिखाई देता हैं ।

यहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि मैहर टी.वी.एस. की बिल्डिंग है।

इसके बाहर का एरिया पूरा कांच से बना हुआ है और यह बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है।

और बीच में से एक रोड गया है जिसके आजु-बाजु खेत है।

यह एक दिवाली का दृश्य है जहां पर परिवार के सभी लोग अपने-अपने घर के गेट पर आकर --

अनार दाने चकरी चला रहे हैं | यह बहुत ही खुश हैं ।